हरे और बर के सामने बहुत ही बड़े एक नारियल का पेड़ है।

और ये स्टील कलर की करी हुई है उसका जो टायर है उसका कलर ब्लैक है और पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि बैठे हुए हैं अन्दर।

और ये पूरा ब्लैक कलर की है इसकी टायर जो है वो भी पुरा ब्लैक कलर की है ओर ये रास्ते पर खड़ी हुई है जिसका रास्ता बहुत ज्यादा कच्चा रोड है और यहां पर आस-पास कोई दिखाई नहीं दे रहा है।

ता है और रास्ते के साइड में दो बिल्डिंग दिखाई दे रही है। एक का कलर ब्लू है और एक का कलर लाइट यल्लो है । और नीचे बहुत ही सारा गाड़ियां आ जा रही है वो दिखाई दे रही है। और आसमान में वो बिल्डिंग से बहुत ही ज्यादा नीचे लग रहा है।

हॉल है और सामने से चलते हुए एक आदमी जा रहा है जिसने व्हाइट कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है।

जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है।

और भी बहुत सारे बाइक्स है यहाँ पे यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक पोस्टर लगा हुआ है पीछे और लड़कियां जा रही हैं। ये रास्ता है जो है वो कच्चा भी है और पक्का भी हैं।